और मिट्टी कलर के हैं और एक राउंड शेप में झूला दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का है और ब्लैक कलर का है।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो बैठे हुए है जो मछलियां काट रहे है।

और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो खड़े है और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो गाड़ी चला रहा है।